इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग नहा रहे है।

और मंदिर के बाहर ये बहुत प्यारी ऊपर दरवाजे के ऊपर काफी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है।

और एक लड़का सीढ़ियों के ऊपर झाड़ू लगा रहा है और एक लेडी नीचे लगा रही है।

और सामने एक सीढ़ी भी रखी हुई है जिसके पास एक हरे कलर का ड्रम रखा हुआ है।

अंदर बेड शीट बिछी हुई है और तकिए लगे हुए है दो और दो कंबल रखे हुए है और टेबल पे लेडिज पर्स भी रखा हुआ --

और खिड़की के पास एक मोबाइल और चश्मा रखा हुआ है खिड़की खुली हुई है।

ये मकान है जिसमें बाहर काफी सुंदर स्टील के--

आप देख सकते हैं और लोहे के सरिए वगैरह भी रखे गए है।

अह कुछ लोग टोपियां लगा के अपने अपने काम से लगे और कुछ खड़े हुए हैं।

और बाहर ही काफी सुंदर पेड़ नजर आ रहा है गोडाउन के।

साइड में ही काफी सारे मशीन नजर आ रहे --

जो टायर पंचर बनाए जाते है और आप देख सकते हैं बुलेट गाड़ी की रिपेयरिंग भी हो रही है।

और बहुत ही प्यारा ऊपर बैलून का डेकोरेशन किया गया और दीवाल पे एक घड़ी भी टंगी हुई है।

यह आप देख सकते हैं यह काफी सुंदर मकान बना हुआ है सामने जो कि कांच में नजर आ रहा है।

और कुछ लोग ऊपर रेलिंग पैसे भी देख--

आप देख सकते हैं ये एक छाकी निकाली जा रहीहै।

एक पंडित जी बैठे हुए हैं ट्राली में सोफा पे और पीछे काफी सुंदर--

कुछ ट्रैक्टर के पास जवान भी खड़ा हुआ है ये--

और एक साइड में ही कंप्यूटर रखा हुआ है।

और दीवाल में काफी सुंदर पेंटिंग की गई है और जिसमें मिरर भी लगे हुए हैं और साइड में--

इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं।

और काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बहोत ही सुंदर--

ये आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है।

और दुकान में काफी सारे बॉक्सेस रखे हैं जिनमें कुछ सामान रखा हुआ है।

ये एक बड़ा सा नर्सरी ग्राउंड है जहां पे काफी सारे पेड़े लगे हुए--

और नीचे आप देख सकते हैं कुछ गमलों में और कुछ पनीर में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं।

जो की घास खा रहे हैं और काफी सुंदर बड़े छोटे बड़े पेक सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और ये काफी लंबा पोल है और पानी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है।